दुकान है यहाँ पर पैरेट पाईप पर बैठे हुए है यहाँ पे तरह तरह के प्रजाति के पैरेट बैठे हुए है यहाँ पर नीचे एक माला भी तंगी हुई है एक बकेट रखी हुई है पीछे की तरफ रेड कलर की जाली है ब्लेक कलर की जालिया हैं।

यहाँ पर एक फोनपे का बोर्ड भी लगा हुआ है।

कछुवा है जो इसकी पीठ पर कब्ज बना हुवा है जे ग्रीन कलर की ग्रासेस पर एक ग्राउंड पर बेठा हुवा है इसके चार पेर है सामने एक मुह दिख रहा है पीछे ग्रीन कलर की ग्रासेस ढेर पड़ा हुवा है।

डिस्पोजल आयटम भी रखे हुए है पीछे की तरफ एक पानी की बोतल नजर आ रही है ये काँच के टेबल पर रखे हुए है।